आसमान दिख रहा हैं पेड़-पौधे दिख रहे हैं कुछ लोग दिख रहे हैं खंबे दिख रहे हैं।

बच्चे दिख रहे हैं उसमें घर दिख रहा है पीछे आसमान दिख रहा है पेड़-पौधे दिख रहे है।

एक रेलिंग दिख रही है डिजाइन बनी हुई है ऑरेंज कलर की दिख रही है कुछ पेड़-पौधे दिख रहे हैं ।

यहाँ एक जीम का हॉल दिख रहा है पीछे कुछ पोस्टर लग रही हैं इस पे आदमी बना है एक लड़का वर्कआउट कर रहा है।

यह कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है नीचे छड़े बंधी हुई है कुछ लोग दिखाई दे रहे है।

ऊपर आसमान दिखाई दे रहा है पीछे कुछ घर भी दिख रहे है लोग दिख रहे है जो काम कर रहे है।

यहाँ कुछ लोग वृक्षासन कर रहे हैं जिन में लड़कियां हैं एक औरत है।